विग्यान बूक सेंटर स्टेशनरी हैं यह जहा पर बिग्यान की बहुत सारी बूक दिखाई दे रही है और बहुत सारा कलेण्डर्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत--

लकड़ी का त्रिशूल है तो कही क्या रखा हुए है एक अंकल खड़े हुए है जो समानो को बेच रहे है।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

यहाँ पर एक पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है तो यहाँ नाला बेहता दिखाई दे रहा है जिसमे दो लड़कियां बेह रही है और एक पुरुष खड़ा हुआ है एक लड़की इधर जा रही है एक बच्चा खेल रहा है।

यह गर्ल डान्स करते हुए दिखाई दे रही है जिसमे वह सुंदर ड्रेस पहनी हुई है एक लेहेंगा के ऊपर टी-शर्ट पहनी हुई है नीचे शूज़ पहने हुए है।

यह एक पत्थरो की छट्टान जैसी दिखाई दे रही हैं यहा एक भैय्या फोटो खिचते दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने एक--